एक बहुत ही सुंदर सा जिम है जो बहुत ही बड़ा है और सामने में मशीन रखी हुई है जिम की ओर--

ब्लैक कलर के इसके गेट हैं यह बहुत ही सुंदर है और आकर्षित जगह है।

एक बहोत ही सुंदर सी जगह है जहां रिजॉर्ट है जहां पानी का फुल है और यहां बहोत सारे लोग ना रहे--

एक बहुत ही सुन्दर सी शॉप है जहां मूर्तियां मिलती है छोटी छोटी भगवान की।

ये एक बहोत ही सुंदर सी जगह है और बहोत ही बड़ी जगह है। ये एक गोशाला है।

और मंदिर के नीचे जमीन पर एक अर्थी का सामान रखा हुआ हैं और एक बंदा मोबाइल पकड़ के खड़ा हुआ हैं।

यहां बहुत बड़ी जमीन है और उल्टे हाथ पे लाल कलर का खंभा लगा हुआ है।

टेबल के ऊपर एक सफेद कलर की छोटी सी प्लेट रखी हुई है।

ठीक सामने बहुत ही प्यारे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं एक बच्ची सफेद कलर की फ्रॉक पहन के खड़ी हुई है और एक बच्चे के हाथ में झंडा है।

यहां बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और सामने एक सफेद कलर की डंडी है जिसमें पीले कलर का कपड़ा लगा हुआ है।

एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन है जहां दो रोड जा रहे हैं एक उल्टे हाथ पर एक सीधे हाथ पर।